तस्वीर मे बहोत सारी दुकाने दिखाई जा रही है।

कुछ लोग भी दिखाई जा रहे हैं।

गार्डन के बीच में तिरंगे के रंग का एक स्तंभ बना हुआ है जो ऊपर से गोलाई में है।

ये तस्वीर एक कमरे की है कमरे में बहुत सारे रैक बने हुए हैं।

यहां का सड़क बिल्कुल खाली और साफ है।

काफी पेड़ और पौधे यहां दिखाई दे रहे--

यहां एक तरफ बहुत सारी सजावट करी गई है।

जो किनारे पर लगी हुई है और यहां साफ खुला आसमान--

ये तस्वीर एक ग्राउंड की है।

ये किसी कॉलेज का ग्राउंड दिख रहा है।

यहां पर फ़रस बिल्कुल सुंदर और साफ है।

ये तस्वीर कुछ मजदूरों की हैं ये मजबूर लेंटर डाल रहे है।

ईनके हाथो मे डंडे हैं और यहां लाइट जल रही हैं।

ये तस्वीर एक सड़क की है।

यहां बहोत सारी कलार्तियां और मूर्तियां दिख रही हैं।

ये तस्वीर एक ग्राउंड की है।

और सफेद रंग के दो स्तंभ दिखाई दे रहे है।

यह तस्वीर बहोत बड़े एक इमारत की हैं।

जिस पर जय हिंद ट्रैक्टर्स लिखा हुआ है।

वो मस्जिद में बैठे हुए हैं।

और एक मैदान भी है। यहां कुछ खंबे भी दिखाई दे रहे--